और इन मकानों के अलावा यहां पे बहुत से बंजर जमीन भी दिख रहे है यह देखकर ऐसा प्रतीत होता है की यहां पर बहुत से कार्य हो रहे हैं।

इस तरफ के बैठक हर हमारे घर के आस-पास देखे जाते हैं एवं यह बहुत ही आलीशान बैठक घर हैयहाँ पर

एवं इस दुकान मे बहुत से कुर्सियां मौजूद है इस दुकान मे बहुत से लोग आते --

तीन से चार मजदूर यहाँ पर इस मकान कि मरम्मत कर रहे हैं इस तरह यहाँ पर एक मकान बन रही है ।